जो कि वहां लो अलग अलग वीकल्स पेट्रोल डलाते हैं वहां पर--

और वेह रंग बिरंगी हैं यहां पर व्हाइट पिंक ग्रीन ऑरेंज रेड --

वहां पर बहुत ही बड़े बड़े घर बने हुए हैं।

और यहां पर बहुत सारी लड़ियां लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में समान मिलता है।

फ्रिज का कलर व्हाइट और रेड है।